और इस हॉस्पिटल के ठीक सामने एक बहुत ही लंबी चौड़ी सड़क है सड़क पर कुछ गाड़िया आ जा रही है और साइड में--

पॉलीटेक्नीक कॉलेज के सामने बहुत ही हरे-भरे पेड़ है और अच्छा सा ग्राउंड रखा गया है।

कुछ पार्क उर्क पेड़ - पोधे भी नजर आ रहे है और दो तीन बाइके भी रखी गयी है।

हम देख सकते है कॉलेज बंद होने के कारन जो कि मिट्टी का ढेर हो चूका है आप देख सकते है कॉलेज बहुत ही अच्छा--

कार्यलय में अपने काम-काज के लिए आते होंगे आप देख सकते है यहाँ पे बहोत सारी बाइके भी लगी हुई है।

रंगोली का कार्यक्रम कर रहे है यहाँ पे अब --

यह तस्वीर को देख के लग रहा है कोई कार्यालय का यहाँ पे काम चल रहा है शायद का कोई कर्यालय है यहाँ पे--

यहाँ पे कुंदन का भी बोर्ड लगा हुआ है।

बम्बू-बम्बू मतलब की बांस सब लगाये गये हैं।